और इसमें सामने तीन बॉल रखी हुई है।

और एक फोन पे का बड़ा सा नक्शा रखा है।

और यहां सड़क पर छोटी छोटी ईट भी बिछी हुई है।

और पीछे एक टावर भी है।

और एक बस भी खड़ी है।

यह दुकान के बाहर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और पेडा के नीचे से सफेद कलर हो रहा है।

नीचे कुर्सियां भी रखी हुई है।

यह एक जिम है जिसके अंदर गुब्बारे लगा रखे हैं।

इस चित्र में दो तीन आदमी खड़े हैं।

यह एक पहाड़ो का नक्शा है।